बिल्डिंग का कलर नीला पीला और सफ़ेद है और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी गाड़ी भी है।

आस पास कुछ पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे है।